यहाँ पे दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं गार्ड बैठा हुआ है।

यहां पे खजूर के बड़े पेड़ लगे हुए है गुलदस्ते से सजाए गए पेड़ हैं।

और बिल्डिंग सफेद कलर से पुती हुई है जीने भी बने हुए हैं लाइट भी दिखाई देने पे--

नीले और पीले कलर के झंडे लगे हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पर अनेक प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं लाइटें लगी हुई हैं।

कॉलोनी बनी हुई है जो सफेद कलर से पुती हुई है।

यह एक खेल का मैदान है इसके पीछे कॉलोनी बनी हुई है।

सभी सामान दिखाई दे रहे हैं खंभे भी लगे हुए हैं।

फूलों के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बड़े भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है दुर्गा देवी मंदिर लिखा हुआ है और माता की फोटो लगी--

यहां पर दो कुर्सियां पड़ी हुई है एक गमला रखा हुआ है टेबल रखी हुई है।

जिस पे कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें यह लिखा हुआ है।

गेट के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है औरत बच्चा लिए हुए खड़ी है एक बोर्ड नीले कलर का लगा हुआ है जीने बने हुए हैं।

ऑफिस क्रीम कलर का लाल कलर से पुता हुआ है बाहर गेट काले कलर से पुता हुआ है घर के बाहर एक खजूर का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है इसके नीचे जे_सी_बी ट्रैक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

आईफोन छपे हुए हैं लाइट भी लगी हुई हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और कैरेट है एक बड़ा सा ड्रम भी रखा हुआ है तिरपाल भी दिखाई दे रहा है।